जिसे लाइटिंग से डेकोरेट किया हुए हैं।

यहाँ पर कुछ टेबल्स रखी हुए है जिन पर कुछ लोग और बच्चे बैठे हुए है।

यह है इंडिया का फाइव स्टार ढाबा है जहां पे वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल खाना अवेलेबल होता है।

कुछ लोग तस्वीर बना रहे हैं कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं कुछ लोग खा पी रहे हैं।

उस शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं साथ में एक दीवार है उस दीवार पर दो अजीम नेताओं की तस्वीर लगी हुई है।